मकान दिखाई दे रहा है मकान में व्हाइट कलर का पेंट हुआ और टाइल्स भी लगी हुई दिखाई दे रही है और ब्रेंचे --

पेड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ में काले-काले से दिख रहे हैं पत्थर भी दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे पत्थर भी दिख रहे हैं।

एक पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है नीले कलर का और व्हाइट कलर --

नदी है एक नाव भी दिखाई दे रही है और बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई --